यह बहुत ही अच्छी झील है और ऊपर आसमान में बारिश का मौसम हो रखा है और एक बत्तख भी है यहां पे और --

हरी ओर बार-बार एक रिंग लगी हुई है और एक खंभा भी लगा हुआ है यहां पे और इसके पास है अगर बाइक बिगड़ी हुई है इस पेट्रोल --

यह एक बिल्डिंग है यहां पे बहुत बड़ी और नीचे ब्लॉक्स भिड़े हुए हैं और यहां पे आसपास --

यहां पे एक मंदिर है और जहां पे एक बाबा है जो एक लड़की को अपने गोद में ले रखे हैं।

सफेद कलर किया गया है ऊपर और नीचे हुल भी रखे हुए हैं और ऊपर--

यहां पे यह स्विमिंग पूल है और यहां पे एक आदमी है जो स्विमिंग कर रहा है एक बच्चा है जो --

और यहां पे आमने सामने आईने लगे हुए हैं और दो यहां पे--

और एक नीचे फर्श भी लगाया हुआ है बहुत ही शानदार फर्श है आप गौर कर ही सक--

और इस गाड़ी में पता नहीं क्या तकलीफ हो गई है और यह आदमी इसको सही कर रहा है।

यहां पे हमें अह नीचे ब्लॉक भिड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और यहां पे नीचे टाइलें भिड़ी हुई दिखाई दे रही है।

और साड़ी दिखाई दे रही है और यहां पे मुझे और आदमी नहीं दिखाई दे रहा है बेचने वाला।